ये चित्र एक दुकान का दिख रहा है जहाँ काफी सारी बार्नियां रखी हुई है पैकेट लटक रहे है और एक --

इस चित्र में एक फिसल पट्टी दिख रही हैं जो पिले रंग की है पीछे की ओर काफी सारे पेड़ पौधे दिख रहे है इधर की ओर मिट्टी की मिटटी का पहाड़ जैसा--

और ये रंगबेरंगी कपड़े इसमें रखे हुए है।

हरे रंग के बिल्डिग सफेद है।

ऊपर की ओर नीले रंग के पूरे टीन लगे हुए हैं रोशनी अंदर आ रही है कुछ लोग खेल --

पैकेट और बॉटल्स रखी है कांच का एक कैबिन है उसमें भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है ।

कप भी बना हे बैनर पे कुछ पैकेट लटक रहे हे साइड में शटर दिख रहा है--

मछलियों की आँखें है एक बिजली का तार लटकता दिख रहा है पीछे की ओर एक नीले रंग की बाल्टी रखी है टाइल्स दीवार पर लगे हुए --

लोहा बना हुआ है दो आदमी सामने की ओर खड़े नजर आ रहे हैं एक ने लाल रंग की शर्ट और नीले रंग की पैंट पहनी हुई है।

पीछे की ओर एक आदमी खडा है कुछ केले टंगे हुए दिख रहे हैं एक पर्दा दिख रहा है नीले रंग का।

कुछ उसके पास हथौड़ियाँ रखी-- हथौड़ी को दीवार दिख रही--